ये एक शादी के लिऐ कार सजाया गया है ज जो जहां बारात के लिए जाने वाली है और वहां उस बारात से दुल्हन को ले के आने वाली है और लोग बहुत ही खुश होंगे और ये सजी हुई गाड़ी लोगो को बहुत आकर्षित करेगा लोग--

सब लोग मास्क लगाए है। रेड कलर के कपड़े मे पहने हुए है और ये लोग इनको-को कुछ बातें सिखा रहे है।

दशहरे पर बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तो यही दिखा रहे हैं मूर्ति है।

फोटो में इंसान मछली को नदी से जाल में फसा कर के लाया हुआ है बेचने के लिए बड़ी-बड़ी मछली है वाइट वाइट सुंदर-सुंदर मछली दिख रही है। आदमी बैठा है कि कोई कस्टमर आए और मछली को खरीदे और उसकी बिक्री हो।

ये एक एचडीएफसी बैंक है जो कि कहा जाता है कि बैंक सभी के लिए बहोत ही जरुरी होता है। बैंक में आप अपने पैसे रख सकते हैं गेहने रख सकते हैं जहां पे सेफ होता है।

बाहर बहुत लोग है जो कि बाइक पे बैठे है। कुछ महिलाएं है जो कि बाहर है अंदर है। उपर पंखे लगे हुए है।

ए ईसा मसीह के चर्च है । ईसामसीह के चर्च के अंदर लोग जा रहे हैं अपनी मिन्नतें करेंगे और बाहर --

यह जे.एन.एम. गर्ल्स हॉस्टल है और जो देखने में काफी सुन्दर है और गर्ल्स जो हैं वो इस हॉस्टल में आकर के काफी खुश होगी क्यूंकि यह बोहोत ही सुन्दर देखने में भ्यू लग रहा है।

आस पास सारा सामान है घर बनाने का और बाकि सब कुछ यहाँ पे बोहोत ही अच्छा है घर मजबूत रहेगा।